यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी बाइक खड़ी हैं।

बहुत ही अच्छी है यह देवी माँ की मूर्ति है।

यह छोटी पूल है। यह पूल पे बोहोत सारे --

यह एक बाजार है यह बाजार में बहुत सारी --

ये और यहाँ सभी पैसे निकालने --

यहाँ पे तेल भराने के लिए आते हैं ।

एक डॉक्टर घर भी है यहाँ डॉक्टर बैठते है और जांच घर भी है।